आस पास पेड़ पौधे लगे हैं वो दिखाई दे रहे हैं एक दीवार है वो दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।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

इस इमेज में मुझे बड़ी सी जगह दिख रही है ये घूमने की और यहाँ कुछ लड़कियां है वो दिखाई दे रही है।

और इस जो दिवार का कलर पथरो का बना हुआ है ये पत्थरो से बना हुआ है इसका कलर ऑरेंज और रेड में है।

इस इमेज में मुझे पुल दिखाई दे रहा है। एक आसपास कुछ खेत से हैं वो दिखाई दे रहे हैं।